भवन के पीछे एक नारियल का पेड़ लगा हुआ है।

कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

इस भवन के दीवाल में कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है।

ये चित्र एक लेडिस पार्लर का प्रतीत हो रहा है।

इनके बाल को बहुत सारे चिमटा द्वारा चिपकाया गया है।

दाई ओर कुछ पहाड़ नजर आ रहे हैं।

दीवाल पर बहुत सारे स्विच बोर्ड लगे हुए हैं ।

कम्मे पर बहोत सारे पौधे लगे हुए हैं।

एक ढोलक जमीन पर रखा गया है तथा दो ढोलक टंगे हुए हैं।

ये भवन दो मंजिला है।

एक अल्बिस्टर का घर नजर आ रहा है।

कुछ व्यक्ति पगड़ी लगाये नजर आ रहे हैं।

बाएं ओर एक सफेद स्कूटी खड़ी है।

ये एक कार वर्क शॉप है।

इस खाली जगह के तीनों ओर इमारत नजर आ रहे हैं।

यहां बहोत सारे कुर्सी और टेबल लगे हुए हैं।

किताब पर डेमोक्रेसी रीजन एंड एक्सक्लूजन लिखा हुआ है।

तीन ऐ सी लगी हुई है सीलिंग पर बहुत सारे बत्तियां जल रही है।